और जल्दी से एक जगह से दूसरे जगह पहोचते--

चेयर्स लगे हुए हैं ये देखकेे हमें भी पता चलता है।

और एक दम मस्त हुई रखी है जमीन वमीन सब सही है।

और उधर अच्छा सा एरिया है गार्डेन में बैठने वैठने के लिए।